यहां पर बहोत ही बड़ा एक शादी का--

सामने दो व्यक्ति डेकोरेशन करते दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लड़के नजर आ रहे है सब एक को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे है।

एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।

बहोत ही बड़ा गेट नजर आ रहा है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक बहोत ही बड़ी शॉप है।

छत पे बहुत सारे आदमी काम कर रहे है और यहां पर --

उनके छत के पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर पूर्व सैनिकों की सेवा में इस बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

तीन लड़के यहां प बैठ कर भोजन कर रहे हैं।

और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक झुमर लगा हुआ है।